और उन कोचिंग्स को कोचिंग्स के थ्रू कंप्यूटर एक्जाम की प्रीपरेशन करते हैं।

वह उनको मोटिवेट कर रही है।

और उस बोटिंग का लुफ्त उठा रहे हैं और पास में एक आईलैंड है जिसमें बहोत ऊँचे ऊँचे पेड़ लगे हुए हैं।

जोकि आपके सामने जो मैकेनिक दिख रहा है वह प्लंबर है।

यह एक फूलमाल है जो की जयमाला में भी यूज की जाती है और मंदिरों में भगवान को भी चढ़ाया जाता है।

जोकि ये बहुत सारे टॉवर्स दिख रहे हैं यह एक इलेक्ट्रिसिटी वाला टावर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिनसे --

पुरे सिटी में --

सप्लाई होती है। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है।

यह जो बहुत सारि बच्चे दिख रहे हैं ये बच्चे पढ़ाई करने के लिए आये हुए हैं पाठशाला में बैठे हुए हैं।

एक कैंप लगा हुआ है जिसके द्वारा कैंप में इन बच्चों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

सेविंग होती है। मसाज होता है और बहुत सारे डिजाइन से हेयर कट होते हैं।

यह एक बिल्डिंग नजर आ रही है। जिसमें एक गा गार्ड भी खड़ा हुआ है।

कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी सामान की नीड होती है वह सब सामान यहाँ पे उपलब्ध है।

आते हैं अपना अकाउंट खोलते हैं बैंक में पैसे जमा करते हैं। विथद्रव करते हैं समय आने पर उनको जब जरूरत पड़ती है तो विथद्रव किया जाता है।

चैरस लगी हुई है जिसमें लोग जो भी है घूमने आते हैं वह बैठके भी इसका लुफ्त उठा सकते हैं।

यह जो दृश्य आपको दिख रहा है वह एक नदी का है जिसमें नदी के अंदर पानी में बोहोत से लोग हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं।

यहां एक जो व्यू दिख रहा है आपको शाम का व्यू है जिसमें सूर्य अस्त हो रहा है और बहुत ही शानदार नजारा दिख रहा है।

स्मार्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं।

और इसमें शैव बनाई जाती है मसाज